स्टेज पर काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है स्टेज पर काफी सारी लाइटिंग की गई है स्टेज पर काफी सारे फ्लावर दिखाई दे रहे है यहाँ पे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं स्टेज पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पे काफी सारी चेयर रखी हुई दिखाई दे रही हैं चेयर के ऊपर सफेद कवर डले हुए हैं।

रोड दिखाई दे रही है रोड पर कुछ जानवर नजर आ रहे है रोड काफी बड़ा दिखाई दे रहा हैयहाँ पे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे है यहाँ पे काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे है ऊपर काफी पहाड़ नजर आ रहे है पहाड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे है यहाँ पे काफी सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग को काफी अच्छे से डिजाईन किया गया है बिल्डिंग सफ़ेद कलर कि नजर आ रही है बिल्डिंग के अंदर कुछ लाइटे दिखाई दे रही है यहाँ पर पीछे ये टॉवर नजर आ रहा है टावर के ऊपर काफी सारी लाइट जलती दिखाई दे रही है।

नजर आ रहा है यहाँ पर एक म्यूजिक क्लासरूम दिखाई दे रही है सामने काफी सारे म्यूजिक इन्स्टूमेंट दिखाई दे रहे है यहाँ पर तबला दिखाई दे रहा है यहाँ पर केशियो नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सारे माइक दिखाई दे रहे है।